दुकान का अंदर में बहुत सारा कार्टून बॉक्स है।

ये तस्वीर में एक कुआं दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा कुरकुरे भी दिखाई दे रहा है।

फ़िर दो लड़का दिखाई दे रहा है।

पत्थर का नीचे में दो लड़का दिखाई दे रहा है।

एक फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।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

पीछे में एक फील्ड भी दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा मोटर भी दिखाई दे रहा है।

फिर आदमी भी दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

फिर बहुत सारा लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

तीन आदमी भी दिखाई दे रहा है।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

टेबल के उपर में एक कपड़ा भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत सारा फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रहा है।

और एक स्टूल भी दिखाई दे रहा है।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

यहां पे एक रूम दिखाई दे रहा हैं।

ग्राउंड में एक कार भी दिखाई दे रहा है।

बाइक भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में घर भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में बहुत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और पीछे में धूप भी दिखाई दे रहा है।

रैक चेयर की दिखाई दे रहा है।

रूम का अंदर में बहोत सारा चेयर है।

का साइड में दो लाइन भी है।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

बहुत सारा बैलून भी चिपका के दिखाई दे रहा है।

घर के नीचे में तीन आदमी दिखाई दे रहा है।